कनक पड़ी हुई है जिसको हम हिन्दी में अनाज बोलते हैं।

पार्क में बैठने के लिए चेयर्स भी लगी हुई है।

और बस में कुछ कस्टमर उतर रहे है।

और रोड भी कच्चा है उसको पक्का करो पहले जाओ--

मुझे एक मैरिज शॉप दिख रही है।

और शाम का मौसम है मौसम बहोत अच्छा है।

ये बहोत ही अच्छा और बहोत ही मेहनत के लिए काम करते हैं।

और साइड में कुछ लोग हैं जोकि उसे देख रहे हैं और मैच का आनंद ले रहे हैं।

उन्होंने अलग अलग कपड़े पेहने हुए हैं।

ये एक आदमी हैं जो कि नदी के पास बैठा हुआ हैं और खड़ा भी हैं।